पीले कलर की दीवालें और सफेद कलर की दीवाल है। लाल कलर की है। ब्लैक एण्ड व्हाइट है। बा --

मोटरसाइकिल है काले कलर की साइकिल है काले कलर की और साइकिल की सीट ब्लैक काले कलर की है और लाल कलर की है।